इसमें एक बहन खड़ी है दो मोटरसाइकिल खड़ी है।

एक स्कूल को नेहरू गाँधी जी की मूर्ति लगी हुई है तिरंगा बना रखा है ढोल के रूप में --